उ मकाम के बगल में एक दुकान टाइप का है जिसमें राधा रोशन अबोड लिखा हुआ है।

यह एक दुकान का फोटो है दुकान में टॉयलेट है अलग अलग तरह का वॉलपेपर है।

यह फोटो एक पहाड़ का है पहाड़ में बहुत सारा पत्थर और हरियाली नजर आ रही है।

आदमी सफेद टीशर्ट और काला शर्ट पहना हुआ है।

यह फोटो एक होटल का है जिसका नाम फूड ट्रैक है।

सामने एक पेड़ भी है जिसमें पत्ती नहीं है। बहोत सारा ट्रैफिक है।

सामने एक रिक्शा है मोटरसाइकिल है बहुत सारा और भीड़ भाड़ाका भी दिखाई दे रहा है।

अगल बगल बहोत सारे पेड़ है हरियाली दिखाई दे रही है ऊपर नीला आसमान है।

सामने से एक आदमी सफेद कुर्ता पहन के जा रहा है जिसके हाथ में एक काला पॉलिथीन है।

यह फोटो एक लाल रंग का बिल्डिंग का है सामने बहोत सारा बाइक और स्कूटी खड़ा हैं।

हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है ऊपर बिजली का तार लटका हुआ है।

दोनों दुकान में दो तीन आदमी बैठे हुए हैं।

अगल बगल रोड में बहुत सारा गाड़ी है। गाड़ी में बहुत सारा आदमी है।

ये फोटो बच्चे लोगों का हैं बच्चे लोग सफेद और लाल कपड़ा में नजर आ रहे हैं।

अगल बगल बहोत सारा पेड़ है हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है।

उसके सामने काला रंग का सोफा है नीचे सफेद टाइल्स है।

सभी आदमियों का चेहरा ब्लर कर दिया गया है।